यहां पर दस कुर्सी है। यहां पर कुर्सी--

यहां मोटर का छाप दिया हुआ है।

इसके बाद बहोत बड़ा मंदिर है उजला है नीला है ब्लैक कलर का एक तार गया है।

यहां पर ब्लैक कलर का फैन है फैन है यहां पर एक आदमी इंसान है।

यहाँ पर एक बहोत बारा इ स्कूल है यहाँ पर चार मझिल है एक गेट है ये दो इंसान है दो साइकल है।

यहां हरदी रेशम का कुर्सी लगा हुआ है और यहां पर--

ये तो नदीम हैं दो एक नदी में दो है एक नदी में दो है उसके बाद--

लड़की है दूल्हा राजा है पीला रंग का।

यह फूल भी है उजला रंग का फूल है साइड में बैग में--